चारों तरफ नीचे की ओर आजु बाजु सभी जगह ईंट ही ईंट हैं और यहाँ पर दीवालें भी ईंट से बनी हुई हैं।

ऐसे जमा करने व पैसे या निकालने के लिए आते है यह में बहुत से लोग के खाते हैं।

इन पत्थरों की दिवाल पर चोक द्वारा कुछ-कुछ लेख भी लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।